तो बाकी सभी किनारो पर हरियाली और पेड़ पौधे है।

फ्री चेकअप दिया जा रहा है जिसमें--

वह लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं।